तीन चार चेयर हैं और उसके बराबर में मेज भी रखी हुई हैं।

यहां पर एक सामने की तरफ बिल्डिंग है और यहां पर एक दुकान भी है और उसपे झालर सी लगी हुई है।

बहोत सारे और एक बच्चा फुटबॉल में किक मार रहा है।